मंदिर हवे मूर्ति अंदल रखल टाइल्स लागल बा घंटी --

वो सफ़ेद बा पीछे पौधा बा नीचे हरिहर घास जामल बाटे।